पेड़ पौधे भी है विंडो वेगेराह भी बनी हुई है यहाँ पर ब्रांचेज़ पड़ी हुई है और मतलब ब्लू ब्लू ब्लू रेड वाइट कलर किया गया है।

यहाँ पे बहुत सारी जगह बन भी रही है और इट पत्थर भी यहाँ पे पड़े हुए है और छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी यहाँ पर लगे हुए है इट पत्थर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर --

और अ काफेर ची जीने बने हुए जेरिंग बनी हुई है अंदर एक जाने के लिए ऐऐ और मतलब लाइटिंग लगी हुई है यहाँ पे लाइट लगी हुई है काफ्रि पेड़ पौधे भी बने हुए है यहाँ पे रोड जिया गया हैं।